दो बच्चे हैं एक बच्चे ने मास्क पहना हुआ है और एक छोटा बच्चा और भी है साथ में बहोत सारी किताबें इनके पीछे रखी हुई हैं।

पीछे एक दवाइयां का पोस्टर भी लगा--

पर्पल और वाइट कलर का बहोत सुंदर सा गेट लगा रखा है और घर के आगे एक छोटा सा पेड़ भी है।

जिसमें ट्रैक्टर के आगे जय श्री श्याम लिखा हुआ है। ट्रैक्टर का रंग ब्लू कलर का है।

एक लड़की ब्लू कलर की जींस पहने हुए बैठी है।

साइड में चार सीनरी लगाई हुई है येलो व्हाइट लाइट रिंग लगाने से दृश्य बहुत अच्छा हो गया है।

ब्ल्यू कलर के कपड़े पहनाये हुए है व्हाइट कलर की टाइ लगाई हुई है जिसमें ब्लैक कलर की पट्टी निकाल रखी है।